यह एक जिम है। जिम में बहुत सारी मशीनें हैं। जिम में अक्सर लोग फिटनेस के लिए आते हैं।

यह एक पार्क लग रहा है बड़ा बड़ा घूमने का पार्क है।

यह एक होटल है होटल बहुत ही सुंदर है।

होटल में बहोत सुंदर सुंदर डेकोरेशन है लाइटें हैं।

यह एक शादी का फंक्शन हैं एक लड़का बैठा हैं इसमें अपना फोटो खिंचवा रहा हैं।

कुकुमबर कंचुदर और बहुत सी सलाद है खीरे की और फैन लगा है गणेशा बहुत सुंदर हैं।

यह टेंट वाले की दुकान है अंबे टेंट लाइट एंड डेकोरेशन --

यह एक मुस्लिम की दुकान है साड़ी सूट--

टेंट लगा हुआ है किसी का शादी का फंक्शन हैं या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन है।